यह तस्वीर में एक बड़ी सी बस दिख रही है लाल और वाइट सफेद कलर की ऊपर की तरफ आसमान सूरज दिख रहा है झाड़े दिख रही हैं और एक ऑरेंज कलर की बस दिख रही है।